हरा-हरा घाच है नारियल का घाच खजूर का घाच और पीछे कोई रेस्टॉरेंट लग रहा है खाने-पीने का और एक कुर्सी लगा हुआ है बेठने के लिए।

बड़ा-बड़ा घाच है हरा-भरा बहुत साफ़ सुधरा बहुत अच्छा लग रहा है उपर बादल है।

और बहुत अच्छा व्यू लग रहा फोटो पर एक चिड़िया उड़ रहा है अब क्या पता वो चील है की चिड़िया है।

बहुत खूबसूरत लग रहा है उजला-उजला पूरा है प्लास्टिक के अंदर पैक है अभी--

यहाँ पर गार्डन है और यहाँ पर ढेर सारे गाछ लगे हुए पोधा नारियल्स का गाछ लग रहा है।

ये जिम का दूकान लग रहा है और यहाँ पर काफी सारे मशीने जिम क्लब के अंदर बोला जाता है।

यह कोई मॉल का फोटो है और यहाँ पे ढेर सारे तेल-वेल के डब्बे रखे हुए है और यहाँ पर--

बगल में चार-पांच गमला रखा हुआ है और कुछ गिट्टिया भी रखा हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है कुछ मजदूर काम भी कर रहे है दो-तीन--

दो-तीन कलर के फूल टांगा हुआ है कुछ गुलाब के फूल लग रहे है और कुछ गेंदा कुछ चमेली के फूल है काफी ताजा फूल लग रहे है नेचुरल और ये हार बना के रखा हुआ है येस खरीदते है।

और ये कार तो पूरा कचरा कर दिया है खोल के बहुत दिन से लगता है खुला हुआ है आगे का ये ऐसा लगता है एक्सीडेट किया गया है बोहोत पुराना कार लग रहा है पीछे बड़े-बड़े बिल--

यहाँ कोई ग्राउंड है और ढेर सारे फुटबॉल ग्राउंडर है।

यहाँ पर तीन आदमी खड़ा है और ये लग रहा है कोई रजिस्ट्री ऑफिस फोटो है और यहाँ पर रजिस्ट्री करवाने कुछ लोग आए है।